ये कोई रोड साइड का दिखाई दे रहा है और रात का समय शाम हो रही है ढल रही यहां पे और श्री लाइट --

और उसके बाजू बाजू में प्रोडक्ट्स रखे हुए बाजू अ ऑनर के बाजू में फ्रिज भी दिखाई दे रही जिसमें--

एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा हैं शायद ये टूरिस्ट वाले बस या फिर जिस पे लोग अ गांव जाते हैं वैसा बस दिखाई दे रहा हैं ।